दूर जाने वाला सफर का बस हैजो रांची झारखंड अगल-बगल काफी सारे बड़े शहरो मे चलता है और आप देख रहे है जो एक व्यक्ति है बस पकड़ने के लिए जा रहा है एक व्यक्ति जो है घूमते हुए दिख रहा है टेम्पो भी यहाँ लगा हुआ है और --

जो लड़का है इनको शायद हल्दी चड़ रहा है और जो दृश्य में पंडित जी के द्वारा पूजाअर्पण के साथ कराया जा रहा है। दो पंडित जी बैठे हुए हैं और हिंदू धर्म मै बोहोत रीती रिवाज के साथ किया जाता है ।